खतरनाक दृश्य है यह मस्जिद है ।

अल फला स्कूल के बगल में है ये मस्जिद।

चालीस रुपये किलो मिलता है।

आइये-आइये सौ रुपया में ऐनक सौ रुपया में।